यहां मुझे कुछ कैमरे दिखाई दे रहे हैं।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

यहां मुझे कुछ दुकान दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे कटनी जंक्शन दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे घंटाघर दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे शासकीय जिला पशु चिकित्सालय दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।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

यहाँ मुझे लंदन बबल्स का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे एक गोडाउन दिखाई दे रहा है।